कैन रखी हुई हैं। साबुन रखी हैं।

इमेज में एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है।

बॉर्ड पर एवरग्रीन पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है।

यात्रियों के बैठने के लिए अ ब्रेनचेस लगी हुई हैं।

एक हाथ दिख रहा है। हाथ में दोने में एक दिया चलता हुआ नजर आ रहा है।

पिल्लरो पर येलो कलर से पेंट किया हुआ हैं। एक लकड़ी की कुर्सी रखी हुई है।

इमेज में अ बोहोत सारे कुर्सी और टेबल एक कमरे में रखे दिखाई दे रहे हैं।

अ कुछ स्कूटी और बाइक खड़ी हुई हैं।

अ छत पर बल्फ जल रहे हैं।

आ बैटस पर अलग-अलग कंपनी के नाम लिखे हुए हैं। किसी पर एडीडास लिखा है किसी पर यस यस लिखा है।

इमेज में एक दुकान दिखाई दे रही है।

आ फूल उगे हुए हैं। फूल पर्पल वाइट येलो और पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं।

रूम में एक टेबल रखा है।